साफ-सुथरा है बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखकर।

लोग-बाग बड़े खुश नजर आ रहे है।

देखने में जगह अच्छी लग रही है बट --

देखने में कोई शहर के बाहर का इलाका लग रहा है।

अपनी बॉडी दिखाता हुआ। अपने सिक्स पैक दिखता हुआ। बड़ा ही खुश लग रहा है।

होना भी चाहिए उसकी इतनी मेहनत का मेहनत का कमाल है य।

देखने में बड़ा रीज लग रहा है कभी खाया नहीं है बट देखकर --

अच्छी बात है देखकर अच्छा लगा।